जिसके ऊपर बरवाडी का एक बोर्ड लगाया हुआ है और वो एक बोर्ड के पीछे दो ठो टंकी है.

और ऊपर में करकट लगाया हुआ है और एक काउंटर बना हुआ है जिसका कलर व्हाइट और स्काई ब्लू है और सामने में एक कूत्ता है.

और उसके नीचे एक रेस्टोरेंट है और सामने में एक रिक्शा लगा हुआ है उसके बगल में एक बाइक है।

जिसमें की दस से पंद्रा गुलाब रखे हुए हैं और ये गुलाब तुरंत के तोड़े हुए हैं.

और अंदर बहुत ही भीड़ है और गेट के उपर फूलों का माला लगाया हुआ है.

ये एक जुलुस है जिसमें की बहोत लोग शामिल हुए है.

और बगल में हरि भाई चश्मे वाला का दुकान है।

यहां पर बहुत लोग फूल बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं.

येलो कलर का और व्हाइट फुल और ब्लू फुल--

रोड पे एक बोरिंग करने वाला गाड़ी लगा हुआ है.

और ऊपर में तीन चार पाइप रखा हुआ है।

और इस जंगल के पीछे एक पहाड़ है जोकि बहुत ऊंचा है।

और इसमें लोहा का पाइप खड़ा करके रखा हुआ है और सामने एक खिड़की जैसा ग्रिल --

और इसके पास टमाटरप्याज --

और एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है लक्स कोजी .

और एक बच्चा ड्रम को लेकर ड्रम बजा रहा है और ऊपर में तिरंगा झंडा का भी लगाया हुआ--

एक खाली फील्ड है जिसके बगल में एक चबूतरा है.

जिस पे एक पौधा रखा हुआ है और उस टेबल के बगल में बहुत सारा कुर्सी है और यहां पर बहुत सारा--

यह एक हाईवे पे टोल प्लाजा है जिसमें एक ट्रक रुका हुआ है.

बगल में एक ट्रे है.

उसके बगल में एक ब्लू कलर का टी-शर्ट पहनके आदमी खड़ा है.

और पीछे बोहोत सारा पेड़ हे और इनकी एक मेम हे ये हाथ ऊपर करके बता रही हे इन लोगो को की कैसे खेलना हे.

जिस में की एक में सब्जी है एक में दाल है और एक में चिकन है.

और लाइट के नीचे साउंड बॉक्स रखा हुआ है और इस साउंड बॉक्स के आगे खाली जगह है.

यह एक दुकान का फोटो है जिसमें की बहुत सारा सामान रखा हुआ है जैसे कि सरसों के रिफाइंड तेल.

टशन मोटर लिखा हुआ है और यह सजा हुआ है फूल से और इसके बाहर दो-तीन पौधा लगा हुआ है.